इहा एक राधा कृष्ण का रंगोली सी बनाया हुआ है और यहाँ सफेद साड़ी--

ए ठो एक ऑफिस है और झंडा फहराने का--